इनपेक्शन करते हुए दिख रहे हैं।

बहोत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है पहाड़ भी दिख रहे हैं।

कुर्सी पर बैठी हुई दिख रह रही है।

एक आदमी भी दिख रहा है।

हिरन भी दिख रहा है जो कि ब्राउन कलर का है।

एक पानी का ड्रम भी भरा हुआ--

बहोत सारी औरतें योगा करती हुई दिख रही हैं।

काम करते हुए दिख रहे हैं उनको येलो कलर की कैप --

डी_जे की गाड़ी दिख रही है।

एल_डी लाइटें भी चमक रही है।

और एक मशीन उस पर लपेटा हुआ पाइ--

मशरूम के पेड़ और छोटे छोटे घर और पानी--

बहोत सारी लाइटे चमकती हुई दिख रही है।

तीन चेयर भी लाल कलर की दिख रही है।

और एक लकड़ी का दरवाजा भी दिख रहा है।

कंप्यूटर टी_वी और एक बेड भीं दिख रहा हैं बाहर--

इस चित्र में हमें बहोत ही--